और उस हॉल में चर्च बना हुआ है जिसे कि सर्च चर्च बोलते हैं और यहाँ पर काफी बड़ी जगह है।

हम इस तस्वीर में देख रहें हैं ये जो तस्वीर है ये तस्वीर एक गेट की है जो कि गेट काफी खुबसूरत और सुन्दर बना हुआ है।

ये रात का फंक्शन है सजावट और यहाँ पर पेड़ के अंदर ये जो लाइट लगी हुई है ये भी खूबसूरत है।

और हम देख रहे हैं यहाँ पे सामान रखा हुआ है। काफी खुबसूरती से ये बनी हुई है। प तस्वीर वगैरा भी बनी हुई।

यहां पे ये जो स्कूल है। स्कूल में यहाँ पे बेंच बना हुआ है। --

जैसे कि यहाँ पर कि कि काफी बड़ी जगह है और जैसे कि यहाँ पे काफी बनी हुई है।

ये यहाँ पे कैसे भी हम कलर के सूट ले सकते हैं लाल या पीला या नीला या हरा और इस तरह से सूट ले सकते --

ए एक लड़की का क्या बना रही है? छोटी साड़ी और यहाँ पर काफी बोहोत सारी --

आ जेैसे कि हम देख सकते है यहाँ पे बाइक कार बाइक मोटरसाइकिल सब वहाँ पे खड़ी है। स्कूटी वगैरह साइकिल खड़ी है।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

पूल की तस्वीर है जहाँ पर स्विमिंग पूल में --

देख रहे हैं। ये एक तस्वीर है इस तस्वीर में ये जो जगह बनी हुई है यहां पे चारों तरफ अ खुली हुई है।

काफी बड़ी जगह है और हमें मूर्ति पड़ी है और क्योंकि ये और हम देख --

और हम देख रहे हैं ये रस्सी से बने हुए हैं पीछे घना जंगल है जहाँ पर कि पीछे खास आई हुई है।

और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पीछे जो ये जगह गिरी हुई है पति --

देख रहे हैं ये जो तस्वीर है ये तस्वीर एक गार्डन की है जहां पर है।

के पीछे काफी जगह कुछ की गई है और यहां पर --

यह पर जो पीछे एक ग्राउंड बना हुआ है यहाँ पे मैच खेलने के लिए लोग आते हैं और --

और जैसे कि हम देख रहे हैं बड़ी जगह है। --

जी ये जो जगह है ये भी ये उम्म काफी उम्म घिरी हुई है यहाँ पे यहाँ पे लेडीज और जैंट्स दोनों है।

ये जो तस्वीर है यह एक माल की तस्वीर है जहाँ पर की लिखा हुआ है और हम देख रहे हैं।

तस्वीर में देख रहे है यह जो तस्वीर है यह तस्वीर एक मॉल की है जहाँ पर कि जैंट्स कपड़े मिलते हैं और यहाँ पर सेल भी लगी हुई है।

है और यहाँ पर जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर पैंट और शर्ट मिलती है।

यहाँ से इसकी दूर से दिखाई दे रहा है और यहाँ पर इसके साथ मूर्तियां बनी हुई है काफी बड़ी मूर्तियां है और वो --